--और आसमान भी बहुत साफ़ है और व यहाँ पे नदी है नदी भी बहुत अच्छा लग रहा हैं।

ये शादी का मंडप है जो बहुत अच्छा है सामने-सामने से डी_जे लगा है और रेड कलर से पूरा सजा हुआ है लाइट भी बहुत अच्छा-अच्छा है।

अंधेरा है और नीचे एक आदमी खड़ा है जो जैकेट पहना हुआ है और सामने एक औऱत खड़ी है ऊ भी कपड़ा पहनी--